और बच्चे सब अपनी-अपनी पी.टी. एक्सरसाइज कर रहे हैं स्कूल के ग्राउंड में।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं एक शादी का मैरेज हॉल है।

और काफी अच्छी लाइटिंग हुई है।

और वहीं से बड़ी हाई टेंशन लाइटें गुजर रही हैं।

यह एक अ अ सी.एस. अ सी.एस.पी. ई बैंक के सी.एस.पी. है और यह अभी बंद है।

जैसे की अपन देख पा रहे हैं यह एक अं विद्यालय है।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक कपड़े की शॉप है।

और भैय्या अम देवी के चरण स्पर्श कर रहे है।

पीले कलर का लोवर पहना हुआ है।

जैसे की अपन देख पा रहे हैं यह एक होटल का होटल रूम है औ --

और यहाँ पे कई सारे क्रिश्चियन अपनी प्रे करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

यहाँ पे फिसलपट्टी झूले वगैरह बच्चों के लिए सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं औ --